जिसमें पानी भरा हुआ है पिलर उठे हुए हैं पर्पल कलर की शर्ट पेहने एक आदमी दिखाई दे रहा है पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं ।

एक चर्च की फोटो है जो की लाल और सफेद रंग का है बाजु में पार्क बना हुआ है जिसमें पेड़ पौधे घास फुस बैठने के कुर्सियां लगी हुई है।

नीचे घास फूस लगी है कई लगी हैं गीली-गीली पट्टियाँ हैं और ये बहोत